और यहाँ पे बहुत सारे झूमर लाइट्स लटके हुए है और निचे में टेबल्स एंड चेयर्स है और निचे भी लाइट्स जल रही हैं ।

यहाँ पे एक खेत हैं जिसके अंदर कुछ हरे - हरे पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे चार लोग हैं जिसमे दो लोग एक बड़े से मार्बल के टुकड़े को खींच रहे हैं।

यहाँ पे एक रास्ता नजर आ रहा हैं जिसके दोनों तरफ़ से बहुत सारे पेड़ हैं।

सब में बहुत सारी लाइट्स हैं जो जल रही हैं और नीचे बहुत सारे सोफ़े रखे हुए हैं।

और एक आदमी पहाड़ के टॉप पे खड़ा हुआ हैं ।

यहाँ किनारे पे एक आदमी खड़ा है जिसने एक हाथ उठाया हुआ है और एक औरत खड़ी हैं।

ये पकड़ के एक आदमी खड़ा हैं जिसने वाइट कलर का टीशर्ट और हाफ पेंट पहना हुआ हैं।